यहां एक घर के सामने स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल के साथ बहुत सारे--

कुछ व्यक्ति खड़े हैं जोकि आपस में बात कर रहे हैं और सामने लाइट्स भी लगी हुई--